सामने थोड़ी सी पानी दिखाई दे रहा है।

यह एक खेत का दृश्य है जिसमे हरे-भरे धान लेहरा रहे है।

एक हारमोनियम खुला रखा हुआ है एक हारमोनियम बंद रखा हुआ है।

यह एक जिम का दृश्य है जहां पे दो आदमी दिखाई दे रहे है।

सुंदर-सुंदर डालियाँ यहां पे बनाकर रखी गई है।

यह माला बहुत सारे रंग बिरंग फूलों से बने हुए है जैसे इस माला मे लाल रंग है पीला रंग है ब्लू कलर का बॉल भी है।

यह एक स्टेज का दृश्य है जहां पे कुछ महिलायें कुछ बालिकाओं को पुरस्कार दे रही हैं बालिकाओं ने रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।